और यहाँ पे चार बच्चे हैं जो देखने में बहुत ही --

और ये रिक्शा अभी नया है और इसका उद्घाटन ही हुआ। देखने में ग्रीन कलर का है ये रिकशा ।

जितने दिखाई दे रहा है और ये मकान एक मैदान बना हुआ है और इस मकान के अंदर भगवान् जी भी हैं जो--

और अगल-बगल में काफी बड़े-बड़े पत्थर भी डले हुए हैं और इसके भी उसके पीछे काफी पौधे भी लगे हुए हैं।